यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही है जिसमें एक दो मंजिला घर दिख रहा है जो कि ऑरेंज कलर से पेंटेड है।

ये घर ऑरेंज कलर की पट्टियों का है जो व्हाइट कलर से पेंटेड है इस घर का गेट काफी छोटा सा है।

फोन पे के स्कैनर रखे हुए दिखाई दे रहे है काफी अलग अलग पेन रखे हुए दिखाई दे रहे है काफी अलग अलग पेन रखे हुए दिखाई दे रहे है काफी सारी कॉपियाँ बेग और टेप और अन्य चीज़े दिख रही है।